यहां पर हमे रंग-बिरंगी लाइट दिखाई दे रही है।

केले दिखाई दे रहें हैं जोकि पीले रंग के दिखाई दे रहें हैं यहाँ पे हमें कुछ ड्राइ फ्रूट दिखाई दे रहें हैं जैसे बादाम पिस्ता काजू यहाँ पे हमें लाइट दिखाई दे रही है निम्बू मिर्च दिखाई --

शादी का फंक्शन चलाई दे रहा है यहां पे हमें दूल्हा दुल्हन दिखाई दे रही है यहां पे हमें कुछ लोग और दिखाई दे रहे हैं यहां पर हमें कैमरा मैन दिखाई दे रहा हैऔर यहां पे एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे हम देख सकते है यहां पे हमे एक वेटिंग स्टेशन दिखाई दे रहा है यहां पे हमें बहुत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है यहां पे कुछ लोग वेट करते दिखाई दे रहे है यहां पे हमे एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है जो कि बैग टांगे दिखाई दे रहा है यहां पर --

फ्रेम मे केकट्स का पेड़ भी दिखाई दे रहा है जो की हरा दिखाई दे रहा है गरे गरे फोटो दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमें कुछ सोर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमें बहुत सारे बैनर दिखाई दे रहे है जैसे आंध्रा बैंक देखाई दे रहा है इंट्रा-ट्रेड दिखाई दे रहा है गोल्डन लोन का बैनर दिखाई दे रहा है एक्सिस बैंक का यहाँ पे --

ट्रैड मिल का कलर काला दिखाई दे रहा है यहा पे और भी बॉडी बिल्डर की ट्रेनर दिखाई दे रहे है यहा पे लाइट और पंखा दिखाई दे रहा है यहा पे हमें खिड़कि--

यहा पे हमे चर्च का सिम्बल दिखाई दे रहा है। यहा पे हमे कुरसियां दिखाई दे रही है। यहा पे हमे गेट दिखाई दे रहा है यहा पे हमे लाइटे दिखाई दे रही है। यहा पे हमे कुछ फूल भी दिखाई दे रहे हैं।